पेज मे एक सड़क शो हो रही है सडक के आजू-बाजु मे इमारत बनी हुई है बिल्डिग बनी हुई है सडक रेड कलर की दिख रही है सडक के उप्पर एक--

बीज में एक दुकान की फ़ो-- दूकान शो की जा रही है जिसका कलर रेड है दुकान की बहार का जो कलर है वो रेड है।

इसमें एक रोड शो हो रही है रोड के ऊपर बहुत सारी साइकल्स खड़ी हुयी है किसी सायकल की ये दुकान है जहा पर बड़ी सायकल --

स्टेचू में गांधी जी बैठे हुए है पैर मोड़ कर और यह स्टैच्यू में वाइट कलर का है बनाया गया है निचे मिटी है येलो कलर की --

इसका ही है ओर यह पर टेबल है व्हाइट कलर की चेयरस भी रखी हुई है व्हाइट कलर की और बलून से ही इसको सजाय गया है।

और-र इसमें अ पीछे साइड भी एक फोरव्हीलर दिखाई दे रही है निचे चेकर्स वाली जमीन बनाई है।

इमेज में एक शॉप शो हो रही है जोकि एक गिफ्ट सेंटर है और एम ए--

बिल्डिंग का कलर वाइट है और बिल्डिंग के बहार ग्रीन कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इस बिल्डिंग की अ-विभाग जानकारी है।

पिल्लर्स का कलर डेर किया गया है निचे जमीं का कलर रेड है ऊपर बॉउंड्री का कलर ब्लू वाइट है।

बहुत सारी खिड़किया बनी हुई हैयहा पे सारी खिड़कियाँ में गलास लगा हुआ है कांच लगा है ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है है जिसपे लिखा हुआ है नाम और रेड क्क्लर की ये बिल्डिंग --

यह एक मंदिर का फोटो लिया गया है इस फोटो में आ एक शिवलिग दिखाई दे रहा है शिवलिग का कलर ब्लैक है काफी बड़ा यह शिवलिग है शिवलिंग के चारो और राउंड करके गैलेरी बनाई गयी है।

मंदिर का ये फोटो लिया गया है मंदिर के बाहर से ये फोटो लिया गया है जिसमे सड़क भी दिखाई दे रही है कच्ची सड़क है।

सो की लगभग बाइक्स रखी होगी शोरूम को बैलून्स से सजाया गया है बलूनस ऑरेंज ग्रीन एण्ड व्हाइट कलर के है ।

मंदिर का ये फोटो लिया गया है मंदिर के गेट का बाहर से यह फोटो है जो लिया गया है मंदिर की बाउड्रीज का कलर पिंक है नीचे नीचे साइड टाइल्स के पत्थर लगे हुए है।

एक शिव मंदिर का ये अ फोटो लिया आया है जहां पर एक चबूतरा बनाया गया है और टाइल्स से व्हाइट टाइल्स से।

हे रेड कलर से जिसको डेकोरेट किया गया है मंदिर के ऊपर वाली भाग में दो शेर है जोकि बैठे हुए है।

बिल्डिंग काफी बड़ी है दो मजिल की बिल्डिंग ऊपर बोर्ड भी लगा है का ब्लू कलर का और--